जिसके सामने आकाश मे सूरज भी निकला हुआ है।

इस चित्र में एक फैक्ट्री नज़र आ रही है जहां पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।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

चित्र में पीछे एक पोस्टर भी नजर आ रहा है साथ में एक खिड़की भी दिखाई दे रही है जहा पर काले रंग का पडदा डला है।

चित्र में दो नाव भी नजर आ रही है जिनके अंदर कुछ लोग सुरक्षा की जाकेट पेहने चप्पू चलते हुए दिख रहे है।

इस चित्र में एक शादी का गार्डन नज़र आ रहा है यहां पर दो लोगों की शादी होते हुए दिख रही है।

इस चित्र के अंदर मछ्ली बाज़ार दिखाई दे रहा है। जहा पर कुछ लोग मछलिया बेजते नज़र आ रहे है।

सामने एक पुरुष और दो महिलाएं--